सोफा नज़र आ रहा है जिसके बाहर एक काले रंग का कैमरा रखा हुआ है तथा पीछे की और पिले --

फर्श नज़र आ रहा है बाहर की तरफ कुछ पौधे भी नज़र आ रहे है तथा ऊपर छत --

नज़र आ रहा है आलू के ऊपर के छिलके भी साफ़ दिखाई दे रहे है तथा निचे का बक्सा भी दिखाई दे --

तीन चार मुर्तिया नज़र आ रही है ऊपर की तरफ दो नीले रंग पर भूरे रंग की नाथ्कासी भी नज़र आ रही है निचे --

हरे नीले आसमानी और गुलाबी रंग के लगे हुए है|जिसके बाहरी वॉटरफॉल नज़र आ--

जीन्स डाली हुई ऑटो रिक्शा के टायर साफ़ नज़र आ रहे है तथा ऊपर की ओर पिले रंग की छत भी नज़र आ रही है।

नज़र आ रही है पीछे की और वृक्ष तथा आसमान नज़र आ रहा है व्यक्तियों ने सीर पर नीले रंग की --

जिसके साथ ही में नीले रंग की लाइटिंग नज़र आ रही है काफी तीलमिली--

और उसके साथ ही में दो तीन काले तथा पिले रंग के टेन्स भी --